इसमें एक लोहे की रेलिंग लगी हुई है। बेड के पीछे लोहे की जालियां लगी हुई हैं। यह बेड अलग-अलग रंग के हैं।

यह पिक्चर एक अस्पताल की है। अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। वह एम्बुलेंस सफेद --

इस पिक्चर में एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। इसमें कई सारे गाड़ियां तथा मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं।

कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

मोबाइल है। वह मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें ले रहा है तथा पास ही एक लड़का उसके बालों को करते हुए दिखाई दे रहा है।

गुच्छेदार हैं। वह अंगूर एक कैरट में रखी हुई है। कैरट में पेपर भी लगा हुआ है।

अलमारी जैसा कुछ रखा हुआ है। इसमें कई सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।